सामने एक खिड़की है खिड़की पर भी चित्र बना हुआ है।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

फूल का रंग नीला गुलाबी और सफेद रंग का है।

चित्र में ढेर सारे कॉरपेट बिछाए हुए हैं।

कमरे के अंदर ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं।

ऊपर की छत पर लाइट्स और पंखे लगे हुए हैं।

यह छबि एक बड़े से कमरे के अंदर का तस्वीर है।

मशीन और पाइप का रंग नीला और सफेद रंग का है।

कमरे के अंदर एक खिड़की है खिड़की काले और कांच की है।